ये एक बहुत बड़ी किराने की दुकान दिखाई दे रही है।

साथ में एक शटर वाली दुकान भी दिखाई दे रही है।

जिस पर अमूल लिखा हुआ है और साइड पर आइसक्रीम लिखा हुआ है।